जो की लाल रंग की टीनो से छत बनी है।

इस दृश्य में हमें एक मशीन दिखाई गई है।

और पीछे आदमी भी खड़े हुए हैं।

पत्थरों के बीच सीढ़ियां भी बनी हुई है।

जहां पर सामने बहोत सारी चीजें हैं।

जोकि ग्रे रंग के हैं।

जहां पर बहोत सारी बोरियां पड़ी है।

इस कुर्सी के सामने ही कुछ फूल भी हैं।

यह सफेद और भूरे रंग की है।

जिस पर बी_सी_ई_आई कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है।